यह चित्र देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें कई तरीके की मछलियां है।

एक व्यक्ति तबला बजा रहा है और कुछ लोग खड़े होकर उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं।

कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं।

रैक में जूते भी रखे हुए हैं।

यहां कई सारे गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं।

बोरी ले जाते हुए नजर आ रहा है।

चार लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं।

यह टीन की सेट से बना हुआ बैडमिंटन कोर्ट है।

यह एक पोस्ट ऑफिस है और यह भारत सरकार के द्वारा संचालित है।

इसके पीछे जालीदार दरवाजा है।

सामने से सूर्य की रोशनी भी आ रही है।

बगल में पोस्टर भी लगा हुआ है।

सामने कुछ लोग घूमते टहलते दिख रहे हैं।

यह गार्डेन काफी ज्यादा स्वच्छ लग रहा है।

यह एक खिलौने की दुकान है।

इस चित्र में ऐसा लग रहा है कि यह किसी बेडरूम का चित्र है।

यह चित्र देख कर ऐसा लग रहा है कि यह किसी मेट्रो स्टेशन का चित्र है।

बीचों बीच रेलवे ट्रैक बने हुए हैं।